हवेली दो ताले नजर आ रहे हैं।

आसमान का रंग साफ दिख रहा है।

तस्वीर में हमें टी_वी शोरूम का दुकान नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक पार्क का दृश्य नजर आ रहा है।

तीन पौधे भी दिख रहे हैं उसमें एक नारियल का भी पौधा नजर आ रहा है।

तालाब के ऊपर बड़ा बड़ा चट्टान भी नजर आ रहा है।

सामने में हरे भरे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

नीचे में हरे कलर का टाट भी बिछाया हुआ है और सामने में दो टेंपू खड़ा है।

एक प्लेट में सब्जी भी रखा हुआ है और उसमें चटनी भी रखा हुआ है।

दिवाल पे क्यू_आर कोड लगाया हुआ है।

एक लाइन में सारे बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

जिसमें की एक का शटर खुला हुआ है और एक का शटर बंद है जो उजाले कलर का है।

जिसमें की हार्पिक भी नजर आ रहा है बर्तन धोने का साबुन भी नजर आ रहा है नहाने का साबुन भी नजर आ रहा है।

दरवाजे के अंदर एक बेड लगा हुआ है काले कलर --

बगल में एक उजले कलर का घर भी है।

इस तस्वीर में हमें बहुत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

साइड में एक डी_जे भी रखा हुआ है सामने में दो बाइक खड़ा है।